एक दीवार दिखाई दे रही है जिस--

फोटो में एक बहुत ही सुंदर सा एक टीला दिखाई दे रहा है।

झील दिखाने दिखाई दे रही है।

हरियाली से एक छोटा सा पारक भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और हाथ में फोन चला रहा है।

कुछ कांच के विशेष डी लगा रखे हैं जिनमें गाड़ी दि --